एक रेस्टोरेंट या कैफ़े का हाल है जहाँ पे कोको कोला का ऊपर एडवर्टिसमेंट भी बना हुआ है।

सामने की बिल्कुल फर्स्ट पे दो कुर्सियां पड़ी --

यहाॅं पर किसी का एक पुराना घर दिख रहा है जिसमें सिलबट्टी पड़ी हुई है और बाहर की जगह पर एक औरत बैठी हुई हैं उधर की दूरी पर बहोत सारे तार दिखाई दे रहे हैं जो की हवेली से जुड़े हुए हैं ।